यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ है और यहाँ पे कोई दिए मोमबत्ती भी जलती हुई दिखाई दे रहे --

और कुछ फाइलें भी दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ बोतलें भी दिखाई दे रही है ये कुछ परदे भी दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब-ब्लू है।